साथ में एक पेड़ है काफी अच्छी तरह से इस ग्राउंड को मेंटेन किया गया है सा --

ये काफी बड़ी रिवर की इमेज है और ये रिवर काफी साफ़ है| इसका पानी काफी क्लियर दिख रहा है सामने से |

कुछ लोग भी रिवर के आस पास में कुछ बोट्स पे कुछ पेड़ के पास भी में खड़े हुए है।

जो की पार्क किया हो या बोट तक गए हो या रिवर के आस पास एरिया में आए हो रिवर भी काफी बड़े एरिया में फैली --

लेकिन इसके पीछे भी काफी ग्रीनरी एरिया है पेड़-पौधे भी बहुत है और साइड में एक बिल्डिंग भी दिख रही है।